देख सकते हैं और एक ट्रैक्टर भी--

कि यहां पर आपको बहोत--

कि यहां आपको बहोत सारे छोटे-छोटे पौधे --

आप यहां इस पिक्चर में देख सकते--

ग्रीन कलर में एक घर पेंट किया गया दिखाई दे रहा है।